वो लड़का टी शर्ट पहने हुए जो सर झुकाए हुए है उसके सामने में कोई लोग फोटो क्लिक करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके सिर्फ मोबाइल और ह थोड़े से हाथ फिंगर दिखाई दे रहे हैं।